ये कोई स्कूल है और इसका नाम एस.एम.सी कॉलेज हाजीपुर है।

और बहुत सारा सिलेंडर का खाली डब्बा है और ये घर टूट चूका हैऔर यहाँ पे बहुत सारा कचरा भी है और एक गेट भी है यहा पे|

बहुत ही अच्छे से सजाई गई है लाइटिंग की गई हैं।